यहाँ हमें तीन जो है दुकानें दिखाई दे रही है। ये तीनो दुकानें हमें खुली हुई दिख रही है। इन दुकानों के सामने एक टिन शेड डले हुए हैं।

उसके बगल में एक घर बना हुआ है घर के आगे एक बहुत बड़ा हरा पेड़ है कार के लेफ्ट साइड बहुत बड़ा सा हमें खेत या मैदान दिखाई दे रहा है जो की ब्यूटीफूल लग --

यह हमे एक बहुत पुराना सा जो है चट्टानों से बना किला दिखाई दे रहा है इस किले की दीवारों पे कुछ लिखा गया है।

यहाँ हमें एक बहुत बड़ा सा जो हैं हॉल या रूम दिखाई दे रहा है इसमें काफी सारी जो है बैंच लगी हुई है इसपे काफी सारे जो हैं बच्चे बैठे हुए हैं।

मंदिर जो है क्रीम कलर रेड कलर से पेंट किया गया है। मंदिर के ऊपर काफी अच्छे डिजाइनस बनाई गई है।

यहाँ हमें एक बहुत बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहे हैं फ्रंट में हमें एक स्पेस दिखाई दे रहे हैं |

यहाँ हमें एक बोहोत बड़ी रोड दिखाई दे रही है। रोड के दोनों तरफ बोहोत हरियाली है। रोड पे हमें काफी सारी बाईक्स दिखाई दे रही हैं। काफी लोग हैं। रोड पे हमें कुछ लाइट्स के पोल दिखाई दे रहे हैं जिसपे कुछ लाइट्स लगे हुए हैं।